दुकान है और दुकान के साइड में पुरा पानी फैल चूका है

यहाँ एक रोड बना हुआ है रोड के साइड में एक बड़ा सा बिडलिंग नजर आ रहा और बिल्डिंग के साइड में कुछ ऑटो भी खड़ा हुआ है और एक ऑटो में ऑटो भी जा रहा है जिसमें कुछ लोग भी भरे हैंहै । दिखने से ये गार्डन लग रहा है गार्डन काफी हरा-भरा है काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है अ-पेड़ के शेप भी काफी अच्छे हैं घास भी हैं जमीन पे पत्थर भी लगे हैं पत्थर गोल से घूमे हुए लगे हुए हैं ।

और एक साइड में नारियल गाछ भी लगा हुआ हैं और एक साइड में रोड भी बना हुआ हैं और एक यहां पतला सा भी लगा हुआ हैं ।

और कुछ चॉकलेट का डब्बा भी रखा हुआ है और यहां पर रेड कलर का एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कुछ कार्टन भी है और एक छोटा सा बस के जैसा कुछ पड़ा है।

जहाँ पे बोहोत सारा समान भी है और यहाँ पे एक हरा सा और ब्लैक सा कारपेट भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ ए समान भी रखा हुआ है